पिक्चर में एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

एक इंसान का हाथ में ब्लैक कलर का बैग है एक इंसान मोबाइल को देख के है।

ऊपर में बहुत सारा कूकर भी है।

पत्थर का पीछे में एक ग्रीन कलर का बॉल है।

ये पिक्चर मे बड़ा सा एक होटल है।

व्हाइट कलर का वायर भी दिखाई दे रहा है।

साइड पे फ्लावर पॉट भी लगा के हैं।

ये पिक्चर में बड़ा सा एक दुकान है।

छत पर एक्सिस बुक लगा के रखा है।

रेड कलर का एक प्लास्टिक भी है।

बहुत सारा डब पेन भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी है।

साइड पे बहोत सारा गाड़ी पार्किंग करके हे--

ब्लू कलर का एक तो डस्टबिन भी है।

पुराने न्यूज़पेपर भी दिखाई दे रहा है।

वायर पोल्स भी लगा के है।

रेड कलर का दो ठो फ्लैग भी है।

पीछे में टीना से बनाके एक बड़ा सा घर है।

बहोत सारा लाइट बल्ब भी है।

व्हाइट कलर का एक फ्लावर पॉट भी है।

ये पिक्चर में वाइट कलर का बहोत सारा चेयर है।

टेबल क ऊपर में जग भी रखा है।

ये पिक्चर में बड़ा सा एक क्लासरूम है।

खिड़की के बाहर में बड़ा बड़ा पेड़ भी लगा के है।

पे बड़ा सा एक बिल्डिंग है बहुत सारा पत्थर करके है।

स्ट्रीट लाइट भी लगाके है।

पेड़ में गोंडल कलर का कलर लगाकर के है।

जिनमें में बरा बरा पेर भी लगा के है।

लड़की का मूर्ति है ब्लू कलर का कपड़ा पहन के रखा है।

ब्लैक कलर का वायर भी है।

इंसान भी दिखाई दे रहा है।